इमेज एक बूक स्टोर की है जहाँ पर बोहोत सारी बुक्स अवेलेबल है और कुछ लोग हैं जो ये बुक्स यहाँ पर खरीद रहे हैं।

बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें बहूत सारे छोले हैं और एक आदमी के हाथ मे एक अ डिसपोसेबल अ डोंगा है जिसमें चाट बनी हुई है जिसमें प्याज और डिसपोसेबल चम्मच भी लगा है जोकि किसी कस्टमर को देने की लिए रेडी है।

ये इमेज एक कैफ के बाहर की है जहाँ पर ग्रीन कलर का जो है वो कार्पेट बिछा हुआ है डोरमैट टाइप जो कि घास की तरह लगता है।

ये इमेज एक शादी की है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन हैं और पीछे जो बैकड्राप है वहां येलो कलर के परदे डले हुए हैं रेड व्हाइट येलो कलर के फ्लावर्स से जो है पूरी सजावट की हुई है।

अ येलो कलर की है और उसमें ग्ला ग्लास की बहोत सारी विंडोज हैं जो की बहोत सुंदर लग रहा है।

ढेर सारा लोग नहाते हैं और यहाँ पे एक ठोर लाइट भी साइड मे लगा हुआ है ।

और बाहर की तरफ देखो तो पूरी साफ सुथरी सड़क दिख रही है और साइड में एक छ बिल्डिंग भी दिख रही है। जिसमें एक दो तीन चार विंडोज हैं ग्लास की।

इमेज एक मेले की है और रात का समय है और मेले में बहुत सारे झूले हैं दो बड़े से जॉइंट व्हील दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।